आदमी चल रहा है पेड़ लगे हैं।

मस्जिद लग रही है उसके बाहर कई लोग भीड़ लगाए हैं।

ये बहुत सुंदर बांग्ला जैसा लग रहा है।

यह एक जेनरल स्टोर है।

ये बांधागढ़ नेशनल पार्क है।

यहां पर कई सारे लोग हैं।

यहां बहोत सारे जानवर हैं जोकि--